दो बसें खड़ी हैं दो पहिए वाहन खड़े हैं और बहुत ज्यादा चहल पहल नजर आ रही है इस--

आई है जिसने लाल रंग का सूट डाला है और कुछ सामान इधर उधर फैला पड़ा है।

कमीज डाली हुई है उसके ऊपर कुछ कुछ आकृतियां बनी हुई हैं।

यह एक मैदान की तस्वीर दिख रही है जिसके आस पास में कुछ गाड़ियां खड़ी हैं और कुछ --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

बंदर बना रखा है एक छोटा बच्चा खड़ा है जो--

बहोत सारी ठंडे की बोतलें भी दिखाई दे रही यहां पर एक व्यक्ति फ्रिज खोलकर सामान ले रहा है।

समुद्र के बीच में घूम रहे हैं नैका पे कुछ सामान भी रखा हुआ है पानी का रंग नीला है और पास में कुछ पहाड़ भी हैं।

इस तस्वीर में एक पीले रंग की सरकारी बस नजर आ रही है जिसके ऊपर भारत देश का झंडा बना हुआ है ये फूल ऐ_सी --

अनेकों प्रकार की मच्छी मिलती है एक व्यक्ति यहां पे--